यह गलियारा बहुत स्वत्छ है यह दिवार पीले रंग से पुती हुई है और गुलाबी रंग के पिलर लगे हुए हैं।

और चट्टान भी दिख रही है इन चट्टानों के बीच हमे एक गुफा भी दिखाई दे रही है पेड़ों के आकार भी छोटे बड़े घने पतले सभी है।

इन के बीच मे नदी दिख रही है और इन हरे भरे पेड़ो का प्रतिभिम्ब पानी में दिख रहा है।

इस फोटो मे हमे एक मनोरम दृश्य दिखाई दे रहा है यह प्रकृति से भरपूर है पीछे ऊंचे पहाड़ इसके आगे पहाड़ो पे हरियाली --

यहा पर हमे एक छोटी सी स्टॉल मे दुकान दिखाई दे रही है।

ये एक ऐतिहासिक इमारत दिखाई दे रही है इमारत के बाहर बगीचा भी बना हुआ है जहाँ पे छोटे बड़े कई तरह के पेड़ पौधे लगे हुए है।

इन पत्थर की दीवार पे बहुत सारी कलाकार्तियां उकेरी गई है जो की अपने समय की संस्कृति और सभ्यताएं को दिखा रही है।